लाल सफेद टं का टप रखा हुआ है।

यहां पर एक पुल है जिस पे पत्थर की ग्रिल लगी हुई है जो सफेद और लाल रंग की है।

सफेद रंग की लाइटें लगी हुई है।

सफेद थमले हैं लाल रंग के पर्दे हैं।

एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर रॉयल ब्रेक प्वाइंट रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

यहां पर लकड़ी के किवाड़ पड़े हुए हैं।

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर नीले नीले रंग में ए_टी_एम लगा लिखा हुआ है।

नीचे एक पुतला है जिसके ऊपर कपड़े पराये हुए हैं।

इस पर लिखा है होम स्पीच एंड डियरिंग सेंटर ।

नीचे कांच का गेट लगा हुआ है सफेद कलर का।

एक दरवाजा है जो थोड़ा खुला हुआ है और एक आदमी ने अपने कंधे पर परना डाला हुआ है।

उस पर ओम शिवाय लिखा हुआ है।

सामने खाट खड़ी हुई है।

यहां पर एक घर है जिसमें एक जाल लगा हुआ है लोहे का लाल रंग का।

उसके ऊपर एक प्लस का निशान एक स्टार लगा हुआ--

ऊपर लाल रंग की छत ढली हुई है।

एक लाल रंग का गमला रखा हुआ है।

नीचे थामलों पर नीला रंग किया गया है।

यहां पर बहुत सारे पाइप रखें हुये है।

बराबर में एक लोहे की ग्रील है।

बराबर में एक दुकान है जिसका शटर नीले रंग का है जो आधा खुला हुआ है।